दिखाई दे रहा है और कुछ झाड़ियों जैसे भी पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी छोटी-छोटी लाइटों से सजी हुई दिखाई दे रही हैऔर कुछ बड़ी-बड़ी लाइटे भी लगी हुई दिखाई दे रही है बिल्डिंग के पास बहुत सारी--